सामने एक बिजली घर है जिसमें चारों तरफ से बिजली के खम्भे लगे हुए हैं बिजली की लाइटें लगी हुई हैं।

सामने खुला आसमान है चारों तरफ से पेड़-पौधे हैं। बीच में एक टावर लगा हुआ है। एक मकान है जिसकी ईंटे दिख रही हैं सामने कुछ --

बड़ा सा पार्क है। जिसके चारों तरफ हरियाली है और एक बड़ी सी बिल्डिंग है जोकि ग्रीन कलर की अंडरलाइन हो रखी है। बहोत सारी खिड़कियाँ हैं इसमें और कुछ डिज़ाइन सा निकला हुआ है। ऊ --

मिट्टी है सामने दो पोस्टर रखे हुए हैं। साइड में बड़े बड़े पेड़ और कुछ सीधी सामने दीवाल है जिस पे एक बड़ा सा --

एक बड़ा सा अ हॉल है जिसपर अथमोक्स लिखा हुआ है। चारों तरफ से डि लाइटिंग लगी हुई है। नीचे कचरे की बाल्टी रखी हुई है स्टील की और उसमें एक पाइप लगा हुआ है जिसपे डैनेसेसन लिखा हुआ है।